इस पिच्चर को देखते हुए मुझे यह लग रहा है कि यह एक चर्च है जहां पे कुछ प्रोग्राम हो रहा है।

इस नज़ारे को देखते हुए मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

जिसपे साफ साफ दिखाई दे रहा है की ये शादी का घर है जिसपे डेकोरेशन भी --

यहां पर शादी का डेकोरेशन लगा हुआ है जो काफी खूबसूरत है और इस पिक्चर पर चार इंसान बैठा हुआ है।

और यहां पे बहुत सारा खाने का सामान भी है जैसे कि हॉर्लिक्स ।

कॉर्नफ्लेक्स और यूज करने के लिए टिशूज और पानी बॉटल का भी बहोत सारा मुझे सेट दिख--

ये पिक्चर एक हार्डवेयर शॉप का दुकान है।

इस पिक्चर को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि एक फैक्ट्री है जिस पर काम चल रहा है वहां पर एक इंसान भी--

कुछ क्लासिकल डांस जिसके हाथों पर बहुत सारा अल्ता लगा हुआ है और यह औरत ग्रीन कलर का साड़ी पहनकर है।

टेबल भी दिख रहा है काफी बरतने भी--

यहां पर काफ बहुत सारे बच्चे भी बैठे हुए हैं।

और सभी बच्चे अपने टीचर से कुछ डिस्कस कर रहे हैं।

इस डांस क्लास के देखते हुए मुझे लग रहा है कि वहां पर एक बहोत बड़ा आईना भी है।

के अंदर एक इंसान भी है जो मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है।

और ये एक एंट्री गेट है जिसके बाहर मुझे थोड़ा से सीढ़ी भी दिख रहा है।

यह पिक्चर को देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये एक फुटबॉल ग्राउंड है।

ये जो टेल होता है कुकिंग ऑयल वो भी बहुत सारा हैं।

इस पिक्चर को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक गाड़ी गैरेज है।

पिक्चर को देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये एक गाड़ी का दुकान है।

और लाइट भी लगा हुआ है और इसके सामने एक येलो कलर का बास्केट भी पड़ा हुआ है।

अह गुलाब जामुन एंड रसगुल्ला--

और उस तरफ कुछ मजदूर कुछ काम भी कर रहा है।